बहुत सारे महात्माओ की फोटो लगी हुई है पोस्टर लगे हुए है और--

इस फोटो में आपको एक नदी का फोटो दिख रहा है जिसमें पानी बह रहा है और एक आइलैंड भी दिख रहा है ।

और जो रोज रोज आवश्यकता होती है वो सब वस्तुए इस दूकान में अवेलेबल है।

मैदान छुटा हुआ है गार्डन बना हुआ है और पेड़ पौधे भी लगे हुए है बहुत ही अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है।

जैसा की आप इस फोटो में देख रहे है यहा एक शॉप का फोटो दिख रहा है जिसमें एक बोर्ड लगा हुआ है हल्दीराम का।

जिसमें समझ में आ रहा है की हल्दीराम के प्रोडक्ट रखे हुए है इसमें बहुत सारे कुरकुरे चिप्स --